ये हेयर कटिंग की दुकान है।

ये लड़का खड़ा है कटिंग करवा के उसके पीछे में एक लड़का खड़ा है ।

हुआ है ये एक सड़क है | इस बोर्ड पे लिखा है धन्यवाद पुणे |

यहाँ बिजली विभाग के लोग भी हैं | ट्रांसफरमर है ।

छोटे-छोटे घास है पार्क में बहुत अच्छा पार्क बनाया हुआ है छोटे-छोटे घास में बनाया हुआ --

ये घर है बहुत अच्छा घर दिखाई दे रहा है | आस-पास घर भी है | यहाँ नीचे दुकाने भी है ।

टोपी लगाए है मास्क लगाए हुए खड़े है लोग यहां काफी सारे दिखाई दे रहे है भीड़ है।